के अंदर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने सफेद कलर के कुर्तें पहन रखे हैं और एक व्यक्ति ने गुलाबी रंग की शर्ट और पैंट पहन रखा हुआ है।

यहाँ पर ग्राउंड में पानी भरा नज़र आ रहा है और एक मोटरसाइकिल भी दिखा रही है और यहाँ सफेद कलर का घर दिखाई दे रहे हैं पीले कलर के घर दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड के पास में मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

यहाँ पर कई बड़े बड़े पेड़ दूर पर नज़र आ रहे हैं और एक सफेद कलर की शर्ट पहने मुँह पर मास्क लगाते हुए एक व्यक्ति भी नज़र आ रहा है और दूर कुछ घर भी नज़र आ रहे हैं।

और यहाँ पे किसी बच्चे के जूते भी दिखाई दे रहे हैं दोनो रखें हुए हैं और यहाँ पे काफी खुली-खुली सी जगह दिखाई --